वो जो है स्ट्रीट लाइट का बल्ब है यहां पे घास का मैदान --

शायद बारिश का मौसम है एक व्यक्ति जो है पार कर रहा है सड़क इधर सड़क है।